पेंटर वाली मशीन के डब्बे पड़े हैं।

यह एक सफेद कलर का बड़ा पार्किंग एरिया लग रहा है जैसे किसी बिल्डिंग के नीचे बड़ी पार्किंग बना के रखी हो।

इस फोटो मे दो आदमी दिखाई दे रहे है जो किसी बिल्डिंग का या किसी घर का निर्माण कर रहे है जिसमें लोहे के कुछ लिए --

और कुछ ड्रम दिखाई दे रहे हैं जो हरे और ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी निर्माण क्षेत्र की फोटो हो।

किसी फैक्टरी के बाहर कुछ घास फूस उगा है और फैक्टरी की बाउंड्री दिखाई दे रही है।

कुछ नीम के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पीछे कुछ मकान कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में कुछ अलग अलग प्रकार के लाल हरे सफेद कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं।

और ऐसा लग रहा है किसी शादी या किसी पार्टी के लिए सजाया हुआ कोई हॉल लग रहा है।

पास में एक बाइक है और उसपे कुछ ड्रेस ट्रे लगाई रखी हुई है जैसे किसी दूध वाले की दुकान या किसी शॉप या फैक्ट्री की फोटो हो।

यह फोटो किसी फूल मंडी या किसी फूल के बड़ी दुकान की लग रही है जिसमें अलग अलग प्रकार के रेड कलर और ब्लू कलर --

बड़े शोरूम या किसी बड़ी दुकान की लग रही है जिसमें कुछ डीप फ्रीजर और कुछ घरेलू फ्रिज की --

इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो चश्मा लगा के फोटो खिंचवा रहा है।